बहुत सारा गाड़ी लगा हुआ है।

सामने में एक इस तरह का ऑफिस है येलो कलर का दीवार है.

टमाटर है आलू हैपरवल है.

ये हैदमा के मंदिर का पिक है.

पीला कलर का बेरिकेड दिख रहा है मंदिर के बाहर आदमी लोग पूजा आदमी लोग खड़े हैं एक आदमी चलता नजर आ रहा है एक लेडिस महिला हैं.

बोर्ड मे सिएट टुअल इस्मार्ट टायर्स लिखा हुआ हे.

पोल है सीएट का टायर है ढेर सारा.

सामने में वो गाडी खड़ा हुआ है दूकान है.

दो पार्ट में पानी है बीच में एक खंभा है चारों साइड मैदान है पेड़ है पौधा है सामने में एक छोटा सा घर है।

पेड़ है सामने में क्रिश्चियन का लोगो है।

रैक बनाकर रैक में ढेर सारा समान रखा हुआ है सामने में एक पंखा है सामने एक तराजू है ऊपर सीलिंग में एक पंख लगा हुआ है।

बॉर्डर पे दो लड़के बैठे हुए हैं बैठकर मोबाइल चला रहे हैं।

करकट का ये है एक पर्दा बनाया हुआ है एक वाइट कलर का कुर्सी है।

ग्रीन कलर के सूट पहेन कर के व्हाइट कलर का स्कूल है.

भगवा कलर का हैं ऑरेंज कलर का है साइड साइड पे पौध--

सोमानी का टाइल्स दुकान है जिसमें रेड कलर से टेक्स्ट लिखा हुआ है.

राइट साइड बड़ा बड़ा पत्थर है पत्थर पे बैठकर एक आदमी फोटो क्लिक करा रहा है.

कुछ लोग बैठकर खा रहे हैं एक बीच में आ ढेर सारे आदमी खड़े भी हैं एक आदमी व्हाइट कलर का टी शर्ट पहने कमर पे हाथ देकर खड़ा है और एक बच्चा टेबल पर कुछ सामान दे रहा है.

एक दुकान है रैक बनाया हुआ है रैक में शर्ट बाकी सामने में वाइट कलर का कोट लटकाया हुआ है एक बड़ा सा पंखा दिख रहा है।

बड़ा बड़ा खम्भा लगा हुआ हे उसीके बीचमे एक किस चिज का भट्ठा सामने बोहोत लम्बा भट्ठा बैठाया हुआ हे.

फिल्म एक छोटा सा घर दिख रहा है जिसमें तीन खिड़की है.

कुछ स्लाइडिंग लगा हुआ हे तीन तरह का बीचमे कोई आदमी लोग खड़ा हे.

कुछ साइड साइड हरा कलर का पेड़ पौधा है आसमान है।

के साइड में घर बना हुआ है पोल है पे--

पेड़ पौधा है तार है के साइड में किसी घर के बगल से एक आदमी जा रहा जाता हुआ दिख रहा है।

अनार सजाया हुआ है संतरा लट सजाया हुआ है.

ये किसी साइट पे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम हो रहा हे जे_सी_बी गड्ढा खोद रही हे बड़ासा मैदान हे सामने ब्लु कलर का घर बना घर टाइप सा रूम बना हुआ हे.

ओर बीच में कुर्सी लगाया हुआ है ढेर सारा.

दो टी_वी लगे हुए है एक सामने में वाइट कलर का कुछ लगा हुआ है वाइट वाइट कलर का एक डेस्क बना हुआ है. सब--

ब्लु कलर है.

इसमें सामने में आर्टिफिशियल पेड़ भी रखा हुआ हरा कलर का ऐंड रेड कलर का फूल है उसमें.

कुछ है सामने ब्लू हल्का ब्लू कलर में आसमान है ग्रीन कलर का पेड़ पौधा साइड साइड उगा हुआ है पूरा।

गाड़ी दिख रहा है एक सीढ़ी दिख रहा है.

ने चश्मा वाले का बोर्ड लिखा हुआ दिख रहा है चश्मे वाले व्हाइट कलर में रेड कलर में चश्मा वाले लिखा हुआ है ऑरेंज कलर में दीवार है एक.

ऊंचा सा मंदिर बनाया हुआ हे मंदिर के बिच मे एक रेड कलर का गेट हे मंदिर के पीछे मे--

जिम का लाइटिंग दिख रहा है रेड कलर का हाफ बंडी पहने एक आदमी है एक --

बड़ा डेम है सामने मे आसमा दिख रहा है पेड़ पौधा है ग्रीन कलर का.

ये ग्रीवर स्कूल का पिक है.